जिसके चारों तरफ रेलिंग भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक बुक शॉप की है।

इसके ऊपर बहुत सारे बैनर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गेट के बाहर वॉचमैन बैठा हुआ है।

यह दृश्य चन्द्रिका देवी का है।

बहुत सारी प्रसाद की दुकानें दिखाई दे रही हैं।

कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और पर्दे भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।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

छठ का पूजा करती हुई दिखाई दे रही है।

ईंट की रेलिंग भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारी लाइटें भी जलती दिखाई दे रही हैं।

जो की स्कूल ड्रेस पहने हुए हैं।

पंखा भी लगा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग आते और जाते दिखाई दे रहे हैं।

कुछ सामान टंगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

भोजन की रैके दिखाई गई हैं।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं।

बाहर एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

इसमें सफ़ेद पेंट की गई है।

विंडो लगी हुई है जिसपे पर्दे लगे हुए हैं।

एक एल_सी_डी भी लगी हुई है।

अलमारी रखी हुई है सोफा पड़ा हुआ है और एक टेबल भी पड़ी हुई है।

तस्वीर एक जिम की है।

एक व्यक्ति डम्बल उठाते दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे बल्ब भी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

गेट के पास में ही एक व्यक्ति बैठा हुआ सामान बेच रहा है।

इस तस्वीर में दो व्यक्ति पहाड़ों से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मिट्टी में उसके पैर के निशान बने हुए हैं।

उसके साइड में ही स सफेद रंग की भी पालीथिन रखी हुई हैं।

यह तस्वीर एक बेकरी की है।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

एक रैक में साड़ियां लहंगे रखे हुए हैं।

जिसमें बेंच पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

बच्चे झूला झूलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजे के पास में ही एक पेड़ लगा है।

एक चर पहिया वाहन आता दिखाई दे रहा है।

दरवाजे पर एक कैमरा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति महिला को चाभी देता दिखाई दे रहा है।